यहाँ एक पार्किंग का लॉर्ड है जहाँ नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है ब्लू कलर के यहाँ पे पिलर है सामने की तरफ पिले रंग की एक मशीन है।

यहाँ एक जगह है जहाॅं हरियाली दिख रही है दूर-दूर तक पेड़ नजर आ रहे हैं सामने --

यहां एक जगह दिख रही है जहां सामने की तरफ एक छोटा मंदिर बना है जिसमें बल्ब जल रहे हैं दो एक ऊपर एक नीचे सामने मंदिर की दीवार पे दो-तीन चित्र लगे हुए हैं।

उसके पीछे पीले रंग के कपड़ो में एक औरत और एक बच्ची खड़ी हुई है जो की सुन रही है सामने एक आदमी और है नीले रंग के कपड़ो में जो की देख रहा है और एक आदमी और है सफेद कुर्ता पैजामा जो चश्मा लगा --

बीच में झूमर लगा है साइड में कुंडियाँ रखी हुई हैं।

ता बस के साइड में इंसान खड़े हुए हैं दो आगे और दो पीछे लोग खड़े हुए हैं पीछे की तरफ पेड़ हैं खंबे हैं।

यहां एक जगह है जहां पर तीन चितो की मूर्तिए बनी हुई है।